इस फोटो में मुझे पर्दा दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारी बोरिया दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे गार्डन दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे ब्रेंच दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो मे मुझे घर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे मैदान दिखाई दे रहा हैं।